बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं भी रखा हुआ है।

इसके हाथ पे एक झाड़ू भी है वो लोग--

शूटर पहने है कोई मोबाइल चला रहे हैं।

एक मंदिर के पास बहुत सारे भीड़ हैं बहुत सारे लोग हैं।

एक बस खड़ा हुआ है जो बस का रंग पीला रंग का है।

ने पहना हुआ है जर्सी

ऊपर मुंह करके पानी पी रहा है।

इस साइड पर रॉक ब्रिक भी हैं।

उसकी साइड पर बिल्डिंग भी बन रहा है उस पे सेटरिंग हुआ है।

भी बिछाया गया।

इस साइड पर अंग्रेजी टॉयलेट वाला भी है।

व्हाइट कलर का पोस्ट भी लगाया गया है।

रंग बिरंग के टायलेट वाला भी है।

उसकी पीछे और एक खंबा दरी--

इंसान भी है और एक पंखा भी लगा हुआ है।

इसकी साइड पर एक अह दो तीन ठो घर भी हैं।